इसमें एक पंखा लगा हुआ है।

इस पे हैंड्स फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंजर लिखा हुआ है।

उसमें एक बच्चे का फोटो दिख रहा है।

पास में एक लाल कलर की डलिया है।

मोटू पतलू टॉम एन जेरी भीम और सिंचैन की फोटो लगी हुई हैं।

यहां पर पानी की बॉटल है।

एक पेड़ में लाल कलर के फूल हैं।

पास में वर्मा स्पोर्ट्स है।

जिसमें कांच का कैबिन है।

जिसमें आदमी नीले कलर का कोट पहना हुआ है।

और एक इस पे लिखा है लीव यूज्ड बुक हेयर ऑनली ।

दूर पे एक गाड़ी दिख रही है।

कांच की बोटले रखी हुई है।

और एक प्लेट है जो काली कलर की है।

जिस इसकी दीवारें बहोत गंदी दिख रही हैं।

ये एक कार वॉशिंग शोरूम है।

डोर पर रेलिंग दिख रही है।

और एक जगह पार्किंग की दुकान है।

नीले कलर का छप्पड़ लगा हुआ है।

एक बोर्ड लगा हुआ है।

और यहां पर बहुत सारी एक्सरसाइज की मशीनें रखी हुई हैं।

यहां पर कुछ लोग भी है।

जहां पर बहोत सारा सामान रखा हुआ हे।

और नीले कलर की पेंट पहना है।

जो ऑरेंज कलर के हैं।

जो कि वाइट और गोल्डन कलर का है।

जहां पर दो बोर्ड लगे हुए हैं।

जिसमें सेब अनार आम अनन्नास रखे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी गाड़ियां--

जो नीले रंग की शर्ट पहना हुआ है।

इस पे एक टमाटर का फूल रखा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे मजदूर है दूर पर दो खजूल के पेड़ नजर आ रहे है।

यहां पर एक हरे कलर का और पीले कलर का झंडा नजर आ रहा है।